तो शॉप है ये एक खुली हुई।

तो जहां पर मोबाइल्स के फोर जी सिम मिल सकते हैं आप देख सकते हैं।

लोग इकट्ठे हुए हैं डाइनिंग के लिए रात का साइम है ये।

ये कोई बैंक्विट हॉल का भी ये--

खाते हुए हैं।

झूला झूल रहे हैं एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ।

ये आप देख रहे हैं यहां पर गाड़ियां आती हैं और कई सारे व्हीकल्स आते हैं पेट्रोल भराने के लिए तो ये पेट्रोल पंप है।

हो रही है ये गाड़ी कि कितने स्टूडेंट इस पार हुए है?

कोच जाता हुआ जहां पर एक प्लेटफार्म है वहां पे रुका है मे बी ।

किसी चीज को दर्शाते हुए तीनों--

यह फोटो में देख रहे हैं इसके घर का व्यू है।

यहां पर लोग आते हैं। कॉफी पीते हैं साथ में--

और एक चीज बाहर आप दे सकते है स्प्लिट ऐसीस --

और यहां पर पेड़ भी आप देख रहे हैं।

एक जाने का रस्ता है जो सीमेंटेड है।

वर्कआउट करना चाहते हैं एक हेल्थी लाइफ --